और अगर किसको अपना जिओ फ़ोन में रिचार्ज करवाना है तो यहाँ पर रिचार्ज भी किया जाता है बहोत ही सुविधाजनक दिया गया है यहाँ पर।

यह एक बुद्ध की प्रतिमा है ।

ऑटो है यहाँ पे कोई भगवान का आस्था है जो की यहाँ पे फोटो नहीं बनाया गया है लेकिन आस्था इसी को बनाया गया है यहाँ पे ए.सी. भी है बहुत ही अच्छे और कम्फर्टेबल दिख रहा है रूम ।

लोग गंगा में इस पार से उस पार जाते है क्योंकी हर जगह गंगा नदी में पुल बनाना संभव नहीं है जिसके कारण नाव से आदमी --

रघु राम राजन है जो भी हमारे देश के --

भवन है और इस गेट के सी सीधे रोड गयी है रोड के किनारे चारों ओर कतार बन रहे हैं पेड़ लगाया गया है जो की बहुत ही सुन्दर और भय लगता है देखने में हर किसको पेड़ सड़क के किनारे ऐसे ही पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमारे पास पर्यावर अच्छा रहे।